और बाहेर गेट के पास काफी सारी बाइक और स्कूटी खड़ी है।

बाउंड्री दीवाल बनी है जो की पीले और सफेद रंग की है।